एक लड़का खड़ा हुआ है जो की वाइट कलर की शर्ट ब्लू कलर की जीन्स है और एक कैप लगाया हुए है वो--

सारी बाइकें खड़ी हुई हैं स्कूटी बाइक्स खड़ी हुई हैं।

छोटी-छोटी सी घाँस लगी हुई है कुछ पेड़ लगे हैं बड़े बड़े --

और अ दोनों अ पार्किंग में अ कुछ बाइक्स खड़ी हुईं हैं और बहुत सारी बाइक --